यह जमीन पे बहुत सारे मकई रखे हुए हैं मकई को हम लोग खाते है यह मकई खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसे हम लोग पका के खाते है यह सभी लोगो को बहुत ही पसंद होता है यह नहुत ही अच्छा लगता है खाने में ।

स्टेट बैंक ए.टी.एम है यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे एक सविता --

यह एक चर्च है यह चर्च बहुत बड़ा है इस चर्च में इसाई धर्म के लोग यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए चर्च में आते हैं यह चर्च में बहुत सारे लोग आए हुए हैं चर्च को काफी अच्छी तरह से सजाया गया है चर्च में इसाई धर्म के लोगो का विवाह भी हो --